यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बाइक है एक बाइक ब्लैक कलर की है और कुछ दुकानें लगी है जो कि उन पे जो पॉलिथीन लगी है वह लाल ऑरेंज और येलो कलर के यहाँ --

एक कुत्ता खड़ा हुआ है जो ब्लैक कलर का हैं यहां का आसमान सफेद नीला और ब्लू दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ कुछ डार्क और ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिंक और और ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे एक खम्बा है जो की सफ़ेद है।

यहाँ पर खाना रखा हुआ है जोकि यहाँ दीवा चेयर है जो क्रीम कलर की है और पिंक कलर --